इस तस्वीर में हम बड़ा ही खूबसूरत गोल गुंबद के जैसा महल देख रहे है।

इस तस्वीर में हम देख रहें हैं एक बड़ा सा कमरा कमरे के ऊपर काले रंग का बोर्ड है।

इस तस्वीर में हम एक बड़ा ही खूबसूरत कमरा देख रहें हैं। कमरे में एक बड़ा सा पलंग है पलंग पर --

इस तस्वीर में हमे एक बडा-सा पेट्रोल पंप देख रहे हैं जिसके नीचे खम्भे बने हैं।

बीच में पेट्रोल के टैंक रखे हुए है और पीछे बहुत सारे दरफ्त नजर आ रहे हैं।

अलमारियां शीशे की बनी हुई हैं। एक बड़ा सा लकड़ी का मेज दिखाई दे रहा है और कुछ सामान मेज के ऊपर भी रखे गए हैं।

तस्वीर में एक आदमी हाथ में पेंचकस लेकर कुछ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हम देख रहे हैं एक बड़ा ही खूबसूरत जगह इस जगह के ऊपर बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई गई है और अगल-बगल --

जिसके ऊपर एक मिनार बनी है और बगल मे दरक्त दिखाई दे रहा है।

बगल में दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और छोटे-छोटे बल्ब भी जलते हुए दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर मे हम एक बड़ा पार्क देख रहे है पार्क के बीच-बीच मे रास्ता बनाया गया है।

एक तराजू है और कुछ मछलियों को बड़ी सी डब्बी में भी रखा गया है।

इस तस्वीर में हम देख रहे हैं एक बडा सा बोर्ड --

इस तस्वीर में हमें बड़ा-सा --

सुनहरे रंग का मूर्ति देख रहे है इसके आगे चार पाँच लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हम एक बड़ा-सा --

दीवारों पर लाल सफेद और हरे रंग के गुफारों से सजावट की गई है।

इस तस्वीर में हमे एक सुनहरे रंग कि दिवार देख रहें हैं।

दीवार पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी बनाए गए हैं इसके बीच में जालीदार झरोखा बनाया जाया है।

दुकान के घर बडे-बडे बॊर्ड लगाये गये हैं इसके अगल-बगल तार लटक रहे हैं।

इस तस्वीर में ये हमे ये एक बडी लंबी से सड़क देख रहे हैं।

इस तस्वीर में हम देख रहे हैं एक बड़ा-सा काला पर्दा दीवार पर लगाया गया है।

तस्वीर में हमें एक बड़ा सा पर्दॊ का घर देख रहें हैं।

इस तस्वीर में हम एक बड़ा शहर देख रहे हैं।

इसमे बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हुई है और अगल-बगल राश्ता दिखाई दे रहा है।

आदि दीवारें बनाई गई है इसके अगल-बगल कई बड़े-बड़े मकान नजर आ रहे हैं।

बड़े-बड़े दरख्त दिखाई दे रहे हैं इसके आगे एक छोटा-सा गोल पाइप लगाया गया है।

बगल में मोटरसाइकिल और ट्रक नजर आ रहा है --

इसके ऊपर एक गोल गुंबद बनाया गया है और अगल-बगल कई खंभे भी लगे हुए हैं।